है एक मंदिर है जिसके बहुत से वाइट क्रीम कलर का रंग लगा हुआ और बहुत सारी सीढ़ियाँ भी हैं यहाँ पर बहुत सारे लोग घूम रहे हैं यहाँ एक नदी है और कुछ पेड़ लगे हुए हैं।

एह एक बहुत ही बड़ी नदी है जिसका रंग बहुत ही सुन्दर दिख रहा ऊपर बहुत बड़े से बादल हैं। वाइट कलर के और कुछ पहाड़ भी --

जिसमे थोड़े थोड़े गड्डे भी बने हुए हैं इसमे फूल भी दिखाई दे रहे हैं।